बिल्डिंग के बाहर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

आस पास कई अलग अलग तरह के खिलौने जमे हुए हैं।

आइसक्रीम परचेस कर रहे हैं सबके चेहरे छुपे हुए हैं।

पार्क में झूला रखा हुआ है झूला फिसल पट्टी बना हुआ है।

झूला अलग अलग रंगों से पुता हुआ है।

यहां शाम का समय हो रहा है।